मेज काला रंग की बि छा सोफा काला रंग कु छा यख फुणी इक दिवाल मा जी पंखा छ लग्युं दिवाल मा जी कुछ पोस्टर कर छन लग्यां यख फुणो एक फोण कु चार्जर भी छत लग्युं।

यख मा जी एक बड़ू बारिकु खम्बा कर छ लग्युं यख पिछाड़ी मा जी एक बड़ी बारीकी कई सारी इमारत छन यख फणा गेट कर छन बण्या।

यख फणा लड़कीलड़कों दुइयों का कपड़ा मिल जांदा छन यख मा जी एक बोर्ड छ लग्युं बोर्ड पर छ लिख्यूं फैशन हाउस ये पर एक मोबाइल नंबर भी छ लग्युं यख पर लाइट छन जलण लगीं मीटर छ दिवार मा जी एक लग्युं।

याफुण कई साड़ी रंगली पिंगली बड़ी बड़ी इमारत छिन कई सारा मकान छिन। यख मा जी एक मकान का भैर मा जी तार पर कुछ कपड़ा छिन सुकोण लग्यां।

यखमा जी गमला छन रख्यां यखमा जी रेलिंग छा यख बड़ी लाइट छिन लगीं बिजली का तार छन यख पर हरु भरु धाडू छ यख पर कई सारा हरयां भरयाँ डाला भी छिन।

यख पिछाड़ी कई सारू सामान छ रख्युं कुछ लोग भी छन यख फणा यख फणा एक बड़ु बारिकु गेट कर छो बणायु दीवाल मा जी सफेद रंग छ होयुं।

यख मा जू च एक कब्बडी कू मैच छ चलण लग्युं खो खो कू मैच छ चलण लग्युं यख फणा कई सारा लोग बैठ्यां भी छन यख मा जी कुर्सी छ लगीं।

यखमा जी एक मैदान च ये मैदान में जी कई सारा लोग छिन।

यख फणि एक रोड छा यख मा जी एक-एक इमारत भी छा ईं इमारत मा जी सफ़ेद अर नारंगी गुलाबी रंग छ होयुं यख मा जी एक बोर्ड कर भी छ लग्युं।

यम्मा जी द्वी बाइक छन लगीं यखम लाल रंग को एक ड्रम कर छ रख्युं पाइप छे यखमा जी हर्या-भर्या डाला छन।

यखमा जी हर्युं-भर्युं मैदान कर छ यख पंजी बिजली का तार छन यख फुणा हर्या-भर्या बड़ा-बड़ा डाला भी छन।

यखमा जी रेलिंग च गेट च यखमा जी यखम एक बाइक च लगीं यखमा जी दुइ टेम्पू कर छन रख्यां।